यह एक दुकान का दृश्य है।

ऊपर में एक उजले रंग का बल्ब लगा हुआ है।

बड़ा सा लकड़ी का रैक बना हुआ है और उसमें बहोत सारा बॉक्स बनाया गया है।

दुकान के अंदर में एक लकड़ी का टेबल है जिसमें एक कॉपी और एक पेन रखा हुआ है।

अंदर में ही एक टूल और एक कुर्सी पर दिखाई दे रहा है।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

और उसी में कुछ फूल भी लटकाए गए हैं।

यह एक मैरेज हॉल का दृश्य है।

अल्टी में सामान को रखा गया है।

यह एक विद्यालय के ग्राउंड का दृश्य है।

बहुत सारे स्टूडेंट जो उजले रंग के यूनिफॉर्म पहने खड़े हैं।

विद्यालय के पीछे में भी बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

और दीवार के किनारे में ही एक बड़ा सा उजले रंग का रैक बनाया गया है।

रैक के ऊपर में बहुत सारे कपड़े के डिब्बों को रखा गया है।

पास के घर के ऊपर में करकट लगा हुआ है और नीचे में--

यह एक रोड का दृश्य है।

और बहुत सारे दूर दूर में बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारा पत्थर भी है।

जहां पे एक व्हाइट बोर्ड और एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

ऊपर में एक पंखा टंगा हुआ है।

जो कि हरा और उजले रंग का है।

यहां पे दो ब्लू रंग का मेज दिखाई दे रहा है और दो डॉक्टर बैठे हुए हैं।

जिसमें बहोत सारी लड़कियां डांस करते हुए दिखाई दे रही है।

स्टेज में एक उजले रंग का कुर्सी भी है।

स्टेज के नीचे में एक गमला दिखाई दे रहा है और सामने में ही दो बैठे हुए व्यक्ति भी हैं।

ग्राउंड में तीन सीढी बनाई गई है।

ग्राउंड में छोटी छोटी घास उगी हुई है।

यहां पे दो इलेक्ट्रिकल बॉक्स भी लगाए गए हैं।

दुकान के दीवार में ही स्कैनर का स्टीकर चिपका हुआ--

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

गेट के बाहर में एक ब्लू रंग का डस्टबिन है।

बाहर में दो महिला और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।